अंदर है उसके सामने बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है जो बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहे है।